यह एक स यह एक स्ट्रीट रोड है बगल में एक मंदिर है यहां से गाड़ी गुजरती है अह बगल में--

अलग अलग तरह के सामान मिल रहे हैं बहुत सारे लोग आके खरीद रहे हैं ए एक --

आंटी भी यहाँ पर सामान बेच रही है ऊपर में बहुत अच्छा पंडाल लगा हुआ है।

यहाँ एक बुक का इंस्टॉल इस्टॉल है यहाँ कई तरह के बुक मिलते हैं मैथ क्लासेस के अलग अलग तरह के क्लासेस के बुक मिलते हैं यहाँ बहुत --

ऊपर में पंखा चल रहा है यहाँ पर आगे की ओर एक बुक का इथ लगा हुआ है।

यहाँ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है यहाँ पर पिलर खड़ा किया जा रहा है चारों बगल से घर बनाया जा रहा है एक --

यहाँ पर म इस पिलर खड़ा किया जा रहा है यहाँ गड्ढे कर कर के नीचे में सरफेस बनाया जा रहा है ऊपर में और बहुत सारा बिल्डिंग बनाया --

जिससे आप पानी भर कर के घर ले जाकर के काम कर सकते हैं।

सुई देते हैं बहुत सारे काम करते हैं ऊपर में एक --

ये एक हॉस्पिटल है यहाँ पर लोग आकर के अं इलाज करवाते हैं ऊपर की ओर लाइट जल रहा है।

एम सुबह की ओर इसमें काम होता है सुबह के समय इसमें काम होता है पीछे की ओर एक रोड भी है जहाँ से गाड़ी आ जा सकती है पीछे की ओर --

ये एक कपड़े का दुकान है यहाँ अलग अलग प्रकार के कपड़े हैं ब्लू रेड यहाँ पर आप शर्ट खरीद सकते हैं एक कुर्सी भी है।

यहां आई_टी_आय के बच्चे भी पढ़ सकते हैं आगे की ओर एक आदमी बैठा हुआ है जो यहां का --

पेड़ लगे हुए हैं पीछे की ओर एक ग्राउंड भी है जहाँ पर बच्चे खेल सकते हैं बहुत बड़ा मैदान भी है और यहाँ पर उ आ --

और एक इस्ट्रीट रोड भी है यहाँ यहाँ से गाड़ी भी आ जा सकती है।